जो वाइट चेक कलर की ब्लू कलर की शर्ट पहनी टोपी लगाई है उसके बगल से सफ़ेद कलर की अपचि गाड़ी रखी है।

जो कि ब्लू कलर की एक शर्ट पेहने हुए हैं हाथ में बैग लिए हुए हैं सामने बोहोत लम्बी सड़क है। बगल से बोहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इसके आगे एक गेट लोहे का लगा है। लोहे की जलीयां है बगल से कुछ गुलदस्ते रखे गा गमले रखे हुए हैं। एक गाड़ी रखी --